व्यक्ति खड़े है शायद सब कोई किधर जाएंगे लेकिन बस का नाम बंगाली से लिखा हुआ हैं।

यह एक सिनेमा हॉल है ओर इस सिनेमा हॉल मे--

यह एक बडा सा गेट है और यहां पे गेट में बगल मे दीवार मे छोटा नागपूर लिखा हुआ है ओर इधर एक पौधा भी है।

यह एक शॉपिंग मॉल है और यहां पे बहुत सारे कपड़े रखे हैं।

सादी स्टार्ट नहीं हुआ है सजावट हो के हे अभी एक लड़का सामने मे बैठा हुआ है चैर मे पता नहीं फोटो क्यू क्लिक करवा रहा है|